एक बेड है बड़ा सा--

एक लकड़ी का बना हुआ खिड़की दिख रहा है।

सफेद रंग के टेबल में एक नीले रंग का बैग रखा हुआ है जिसके पीछे एक आदमी है।

रस्ते भी बने हुए हैं ढेर सारे लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग हैं जो की दिखाई दे रहे हैं नीले रंग का साइड से समुद्र--

ए शायद से एक स्कूल का फोटो है जहां एनुअल स्पोर्ट्स एंड गेम अअ आयोजित किया गया है।

पेड़ के नीचे बैठे हैं जो बहुत प्यारा है सफेद कलर का घर का रंग है।

यहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है दो लोग छत को तोड़ रहे हैं।

ये साइड से बाहर का फोटो है क्योंकि उधर एक स्टैचू है।

साइड से एक स्कूल का फोटो है जो कि स्कूल के बच्चे बैठे है उधर एक प्रिंसिपल हो सकता है जो कि लेक्चर दे रहा है जीसस बना हुआ है।